यह एक चित्र है ओर इस चित्र में चार महिला खडी हुई दीखाई दे रही है।

यह एक चित्र और इस चित्र मे एक सर --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

ए सभी मशीने लोहे की दिखाई --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

यह एक चित्र है और इस चित्र में एक पहाड़ --

डॉक्टर की चेकअप करने वाली मशीने रखी गई इसमें डॉक्टर अपनी पेशंट को चेक करते हुए दीखाई देरे हैं।

और उनसे पिछे भगत सिंह की एक तसवीर भी लगाई गई है।

से कुछ ही दूरी पे एक बड़ी-सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है यह बिल्डिंग का रंग --

पहाड़ बादल बिलकुल छाया हुआ है और पहाड़ के उपर भी हरी-भरी घास और जंगल लइखाई दे --

नाली रंग की इसके उपर कुंभज बनाया गया है मंदिर को चारो ओर से घेरा गया है।

सड़क के आस-पास कुछ महिलाएँ और पुरुष भी पेदल चल रहें हैं इस चित्र में बड़े-बड़े पहाड़ भी दिख --

इस कमरे में कई सारे लोंग लाल रंग की कुर्सी पे बैठें हुये दिखाई दे रहें हैं।

यह एक चित्र है और इस चित्र मे एक मछली की दुकान दिखाई --

इस मछली की दुकान पे कई सारी बडी-बडी मछलियां --

सभी मछलियां को जमीन के उपर रखा गया है और इसकी कुछ ही दुरी पे दो बाल्टी हैं एक बालटी --